यह रोड के ऊपर एक पर्सन जा रहा है तो वही एक बाइक लेके कही जा रहा है।

प्लेट रही है जो काली कलर की है उसके अंदर दो चम्मच रखे है एक गोल आकार वाला चम्मच एक काटे वाला चम्मच अंदर --

यहाँ पर गिटार रखे हुए हैं पियानो रखे हुए हैं| यहाँ एक हेलमेट भी रखा हुआ है कोई डमरू-ढोलक भी रखा हुआ है| यहाँ की दीवार सफ़ेद कलर कि दिख रही है नीचे कोई कोई बोक्स बने हुए हैं।

खूब छोटी घास है कुछ बड़े पेड़ हैं कुछ छोटे पेड़ हैं कुछ ऑरेंज और वाइट कलर में बड़ा पत्थर भी दिख रहा है।